व्हाइट व ग्रीन मे बलून दिख रहे है एक खिड़की दिख रही है एक लाइट दिख रहा है।

ऊपर से एक पानी का झरना नीचे गिरते हुए दिख रहे है नीचे छोटे-छोटे पत्थर के--

यहाँ एक बड़ा सा जो है वो नदी दिख रहा है जहाँ पर पानी भरा हुआ है नदी के किनारे--

यहाँ एक बड़ा सा चर्च दिख रहा है जिसके छत के ऊपर एक--

बड़े-बड़े हरे पेड़ नजर आ रहे है। नीचे कच्ची जमीन दिख रही है और--

और एक लोग एक बस मे चढ़ता हुआ दिख रहा है उसके हाथ मे एक बैग दिख रही है।